में हमें नवरात्री के बारे में बताया जा रहा है | इस चित्र में माता जी की मूर्ति स्थापित की गई है |

यहाँ पर दो आइनें बड़े बड़े लगे हुए हैं और दो कुर्सियां भी लगी हुई है।

इस चित्र में हमें एक गार्डन नजर आ रही है यह गार्डन में आप --

वहाँ एक पहाड़ है।

हेयर सलून दिखाय दे रहा है। वह एक मोजूद है।